घास का मैदान दिखाई दे रहा है वृक्ष दिखाई दे रहे हैं।

पहिए पड़े दिखाई दे रहे हैं औजार दिखाई दे रहे हैं।

पर लाल रंग की चुन्नी ओढ़े दिखाई दे रही है।

एक युवक कसरत करता दिखाई दे रहा है।

यह एक पार्क का चित्र दिखाई दे रहा है जहाँ लाल रंग का बना दिखाई दे रहा है।